सामने एक वाइट कलर का बोर्ड नजर आ रहा है जिसमें

और बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं साइड में--

दीवार बने हुए हैं जिसमें यलो कलर का फुग्गा लगा हुआ हैं अंदर बहोत सारे पगड़ी रखाए हुए हैं।

एक ऑटो स्टैंड नजर आ रहा है जिसके पीछे बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

और भी और अधिक प्रकार के बहोत सारे समान रखाए हुए हैं।

सामने एक बोर्ड नजर आ रहा है जिसमें--

सुनिता नर्सरी करके लिखा हुआ है यहाँ बहोत सारे पौधे नजर आ रहें हैं एक साइड में बाइक खड़ी हुई है और एक आदमी चलता हुवा जा रहा है।

मार्बल टाइल्स कोटा वह काला पत्थर के विक्रेता--

दिखाई दे रहा है जिसका बोर्ड का कलर येलो और ब्लैक है और--

और बहोत स्वादिष्ट लग रहा है इसको खानें में मजा आ जाएगा।

भरत पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है जिसका पेट्रोल पंप का कलर ब्लू येलो व्हाईट दिखाई दे रहा है और सामने में कुछ बिल्डिंग --

स्लाइड का कलर है येलो ब्लू ग्रीन कलर का है जिसके ऊपर में कुछ लोग बैठे हुए स्लाइड कर रहे हैं।

आयरन का कलर सिल्वर है और कोट का कलर ब्राउन है और चेयर का कलर को ब्लू है और कुछ ब बलून लगे हुए है।

जिसमें ग्राउंड में तीन लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं एक का चप्पल बाहर फेंकाया हुआ है और पीछे की तरफ--